और यहां पर साइड में लोहे की ग्रिल भी है।

और यहां पर काफी सुंदर सुंदर बैलून भी लटके हुए हैं।

और एक आदमी सम नदी में नहा रहा है।

और साइड में कुछ घर भी है।

जिस पर लाल सफेद कलर और साइड में शीशे भी लगे हुए हैं।

और इसी के पीछे काफी सुंदर सुंदर लाइटें और फैन भी लगे हुए हैं।

यह एक एल_इ_डी की दुकान है जिसमें काफी सुंदर सुंदर एल_ई_डी रखी हुई हैं।

यह एक दवाईयों की दुकान है इस दुकान में काफी ज्यादा दवाइयां धरी हुई है।

और यहां पर काफी अच्छी लाइटे भी लगी हुई है।

और इस पर काफी सुंदर कलर भी किया हुआ है।

और इस पर काफी सुंदर सुंदर सीसे भी लगे हुए हैं।

जिसके ऊपर एक अह सॉस की बोतल भी है और इसके पास ही चार गिलास भी रखे हुए हैं।